इस चित्र में हम देख सकते हैं हम एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है जिसका मुहरत किया गया है जिसको गुब्बारों से सजाया गया है यहां पे तीन कलर के रंगों के--

गुब्बारों का इस्तेमाल किया गया है जो की सफेद और केसरी और हरे रंग का गुब्बारे हैं।

यहां पे पेट्रोल पं को पूरे गुब्बारों से सजाया गया है जैसे कि इस पेट्रोल पंप का आज--

कसरत करते हुए अपने सामने वाले शीशे में अपने मोबाइल से फोटो खींच रहा है और हम पीछे भी देख सकते हैं और भी यहां आ के जो जिम में कसरत करने आए हैं।

खाना खजाना की तरफ से बनाया गया है खाना खाना खजाना की जो यूनिट है जिसको संजीव कपूर होस्ट करते हैं।

जिस पर स्टील की रेलिंग लगी हुई है ताकि हम उस रेलिंग को पकड़ के ऊपर जा सके।

कुछ महिलाएं आती जाती हुई नजर आ रही हैं बातें करती हुई नजर आ रही हैं और बिल्डिंग के बाहर--

इस चित्र में हम कुछ सामान देख रहे है जो किसी अह दुकान या किसी अह फैक्टरी या कि ऐसा है जिसमें --

पहाड़ों के बीच हम झरना बेहता हुआ देख रहे हैं आसपास दो बे गेहरी खाई है पेड़ ही पेड़ है।